दिए गए चित्र के अनुसार यह जो चित्र हमें दिखाया जा रहा है वहां जो है एक साउथ का है।

यहाँ एक वसंत विहार का एक गार्डन है जो एक विकसित कॉलोनी है वसंत विहार रायपुर सिटी का रायपुर जो हैं छत्तीसगढ़ में बसा हुआ एक शहर है।

और आस पास जो है उसके गार्डन का जो घास है वो है काफी मखमल घास है बहोत अच्छा--

यह जो चित्र हमें नजर आ रहा है वह जंगल का चित्र है जंगल में एक जिप है जो पता नहीं कहां से चल के आ रहा हैं।

यह जो चित्र है एक नदी है जो पूरी भरी हुई है बारिश के बाद का जो पानी भरा होता है वैसा ही भरा हुआ--

अस्पताल का जो कहना चाहिए कि रिसेप्शन है वो ब्राउन कलर का--

हमारे सामने जो तस्वीर दिख रही है वह एक सरकारी हॉस्पिटल का चित्र लग रहा है सामने बोहोत सारे लोहे के ब्लैक कलर में पेंट किए हुए जो कुर्सियां है वह सामने पड़े हैं।

यह जो हमें अगला चित्र दिखाया गया है वो एक कैफे का चित्र है काफी खूबसूरत सा लग रहा है।

और ए जो बोड र टंगे हुए हैं ओ काफी खूबसूरत सा इनका बोड टंगा हुआ है लाइट थोड़ी सी ठीक है ठाक ही है।

उसके बाद तीन रखे हैं फिर दो रखे हैं वो काफी खूबसूरत सा लग रहा है पीछे बैकग्राउंड पे।

सीट वाला जो है इसका जो कवर किया हुआ है।

यह एक शॉप है यह शॉप ऑरेज कलर का पेंट किया गया है शॉप के बाहर में क्या है कि दो बाइक खड़ी हुई है यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट बिकता --

आस पास जो है काफी दूर दूर तक कोई घर वर तो नहीं है फ्लैट फ्लैट ही दिख रहा है सिर्फ एक ही फ्लैट है।

अगला जो चित्र हमें दिखाई पड़ रहा है वो काफी खुशनुमा सा महसूस कर रहा है ये पहाड़ के ऊपर से लिया गया तस्वीर है।

आसमान जो है नीले रंग का है काफी खूबसूरत सा बना हुआ--